दो या तीन लोग खड़े हुए हैं।

जिसको देखकर यह लगता है कि--

इस फोटो में मैं देख पा रहा हूं कि--

और उसके सामने दो मोटरसाइकिल भी है।